यहां पर मुझे रेड कलर की दीवाल दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक पेड्डी दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे वह कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं।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

वे हरे कलर के हैं वो यहां से काफी दूर में दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे एक व्हाइट कलर की नीचे देवाल एक--

यहां मुझे कुछ व्हाइट कलर की चीजे दिख रही है।

यहां पर मुझे एक रोड में पानी थोड़ा सा भरा हुआ--

एक मुझे डम डब्बा टाइप का कुछ लाल कलर का दिख रहा है। यहां पर मुझे कुछ कैरेटे --

यहां मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है।

यहां मुझे रेड कलर के दो डंपर दिखाई--